दृश्य किसी मैंरिज हॉल का गेट है जोकि इंटर करने के लिए काफी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है और कुछ लाइट्स वगैरा भी दिए गए हैं फूल वगैरा डेकोरेट किया गया है। पर्दा भी यूनिक है।